यहां एक नर्सरी दिखाई दे रही है यहां कई टाइप के पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है यहां पे कई सारे मजदूर काम कर रहे है।

बसेस खड़ी है लाइक तो और शायद से वो स्कूल दिखाई दे रहा है।

और बड़ा सा फूल दिखाई दे रहा है।

मतलब सर्कुलर पोंड जैसे में प्लांट किए हुए है जो बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक स्टेट बैंक है और एसबीआई बैंक है जहां पे लोग को बहुत लाइन लगी हुई है।